बहुत पड़ रहे हैं। बहुत ही हुई है।

और उस टरफ बहोत ठारे घर दीठाई पड़ रहे हैं और इस टरफ भी बहोत सारी लाइटें जल रही हुयी हैं। नीचे की ओर धत धात भी दिठाई पड़ रहे --

एक रेप्लसेतनत हो रहा है एक बिल्डिंग का और इस तरफ काँच का बना हुआ है और बाँस के बहोत बड़े-बड़े खम्बे जैसे जाल नुमा बनाया गया है।

औल इछमे बहुत थाले पेल दिखाई पल लहे हैं कुछ छोटे पेड़ हैं कुछ खजूर के पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं ऑल इतलफ उटलफ --